वो फिर किताब का भी उसके उपर में दुकान है पर दुकान के बाद दूकान के बाद इधर किराना स्टोर भी है बहुत बड़ा --

ये किसी हॉस्पिटल ये हॉस्पिटल है इसके अंदर अ बहुत सारे मरीज ए मरीज भी है सिकंदरा रोड सिकंदरा सिकंदरा सिकंदरा रोड के इ रोड के ही तरफ --

ये ये अयोध्या का अयोध्या का मं- कनक भवन है अयोध्या का कनक भवन है इसके इ अयोध्या का कनक भवन है यहां पे जो यहां पे जो भी पूजा करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है।